और आदमी खड़े है काठी रेडी है और मीटर लागरो है और पिले कलर को कोट पहरा आदमी हैं और गदा पड़े हैं।

आदमी खड़े है चार पाँच घर के ऊपर फोटो लागरी है जंगलों है और दुकान के आगे खड़ा है इन बोला सारा आदमी खड़ा है एक न लाल पहन राखी है टी-शर्ट एक काली बुर्सट --

मेज है मेज मे चार पाँच ग्लास है गिलासिया के ऊपर चार पाँच ग्लासिया और है और तीन ग्लासया और है बड़ा सोना लागे है और धोली दीवार है और गैला खाटली खड़ी है।

लड़किया खड़ी है निरत्या कला है पीछे शिवजी की फोटो लागरी है।

इने लकड़ी पड़ी है और इन्ने बजरी पड़ी है इन्ने पहाड़ उग रेया बोड़ा सारा और इन्ने पसडीयो पड्यो हैं।

यह आदमी खड़े है पानी खड़े है केन खड़े है और हरे हरे कलर का पानी है और इन पहाड़ दिखन लाग रा है।

इ अलग खम्बो है इने भी खम्बो है और एक आदमी बेठ्यो है और एक इने जाण लाग रिया है और उतर बिन जाण लाग रयो है इने भी जान लाग रयो है बो जान लाग रियो।